और जो ऑफिस का कलर है वो वाइट कलर है।

यहां पे एक सौंदर्य है जहां पे सामने एक बड़ा सा वाटर टैंक रखा हुआ है।

यहां पे एक सौंदर्य है जहां पे सामने एक शॉप है।

और दो चेयर भी रखे हुए हैं।

उसके ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

ल लेफ्ट साइड में नीले रंग के है राइट साइड में ब्राउन रंग के है।

यहां पे सामने एक लड़का जा रहा है जोकि मास्क पहना हुआ है।

यहां पे एक सौंदर्य है जहां पे सामने एक हार्ड वेयर का शॉप है और सेनेटरी शॉप भी बोले सकते हैं।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

जैसे पावरलिफ्टिंग मशीन चेस्ट मशीन --

और ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल पंप फिलहाल अभी बंद है।

और यहां पे फ्लैग होस्टिंग की तैयारी चल रही है।

नीचे की साइड में एक आदमी रंगोली बना रहा है।

सामने जो फ्रेम बना हुआ है उसका कलर व्हाइट है और दीवारों का रंग येलो है।

सामने बहुत सारे बेल्ट रखे हुए हैं जिनमें से डॉग कैट और सभी प्रकार के जानवर के बेल्ट्स से उपस्थित हैं।

जो बिल्डिंग का कलर है वह पीले रंग का है।

यहां पर एक सौंदर्य है जहां पर सामने एक बहुत बड़ा सा प्लेयिंग ग्राउंड बनाया हुआ है।

यहां पे एक सौंदर्य है जहां पे सामने एक चर्च बना हुआ है।

और जो कारपेट है वो ग्रीन कलर का बिछाया हुआ है।

जैसे की पेडिग्री है बोन बिस्किट है।